ये पुराना खंडर टाइप से कोई मंदिर दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे खंभे पिलर बने हुए हैं ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पे कंट्रेक्शन का काम चल रहा है जिसमें कुछ मजदूर हैं जो पीछे लगे हुए हैं कुछ औरतें भी दिखाई दे रही है।

दो आधे डिजाइन में हरी और लाल कलर की लाइटों से सजाया गया है।

कार्टून में छोटे डब्बों में पैक किया हुआ समान भी रखे हुए हैं।

शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं काले कलर के आगे एक बोर्ड भी है इसमें थोड़ी सी ये कार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक लड़की को दिखाया गया है जो नृत्य कर री है उसने--

और इधर अटैची रखी हुई है। इधर कचरे का डब्बा भी है।

नीचे सोफे सुंदर डिजाइन में रखे हुए हैं और ये अभी कोई खाली है ग्राहक है नहीं इनके ऊपर झूमर भी लगा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसके टेबल पर नाश्ते में रखा हुआ है और यहां पे खाली ग्लास भी रखा गया है उधर कुछ --

आगे अलमारी में कुछ किताबें वगैरा रखी हुई है ऊपर--

यहां पे भी सेवा सदन का काला बोर्ड लिखा बड़ा बनाया गया है उसके आगे भी --

यह एक रेस्टोरेंट जैसा हॉल दिखाया गया है जिसमें इधर की साइड में काली चेयर पर दो आदमी बैठे हुए है।

फ़िरोजी कलर के सोफे लगे हुए हैं उधर साइड में बड़ी सुंदर अलमारियों में सामान रखा गया है इधर गेट भी लगा हुआ है जो बंद है रूम का।

यहां पे कुछ लड़के हैं लड़कियां बच्चे वगैरह खड़े हैं गाड़ी भी दिख रही है ऑटो टैक्सी भी दिखाई दे रही है।

यह सीढ़ियां चढ़के है कांच लगा हुआ है यहां पे ऊपर एक पेंपलेट भी लगा हुआ है नीचे स्कूटी खड़ी है।

यहां छत लगी हुई है वाइट कलर की पंपलेट लगे हुए जगह जगह पे पंखे लगे हुए हैं यहां औरतें ने शॉल ओढ़ रखा है।

नीचे स्टूडेंट बैठे हुए हैं बहुत सारे यह कॉलेज की फोटो है यहां क्लास लग रही है व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है यहां पे।

ब्लू कलर वाइट कलर पिंक कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं और यहां पे डॉल भी लगे हुए हैं।

आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे पत्थर है ये खेतों जैसा इलाका दिखाई दे रहा है।

और घर दिख रहे हैं बहुत सारे जिस पे सेल टैक्स की टंकी रखे हुई है पास में एक टैंट का घर भी बना हुआ है।